तैयार हुए हुए हैं औरतें बैठी हैं बहुत सारी आदमी भी हैं कुछ थोड़े-थोड़े --

बहुत अच्छा काम हो रहा है और बहुत ही अच्छी बिल्डिंग बनेगी बहुत बढ़िया --

जे एक लड़कियों का स्टाल है यहाँपे ज़ेव्रात बच्चियों के चीज़ है ज्वैली बहुती बढ़िया बढ़िया रंग बिरंगी--

ये शेड है जहाँ पे लड़के खड़े हुए है स्कूल के यूनिफार्म में बैग खड़ा बैग पहने हुए खड़े हुए है शेड के नीचे और --

ये अंकल अपने रिक्शा को पकड़के खड़े हुए है ख़ुसी से और सफ़ेद चदा और शर्ट में खड़े हुए है तसवीर खिंचवा रहे --

बढ़िया सी जगह लग रही है एक तरफ़ सुजून खड़े हुए है दूसरी तरफ़ भी कुछ खड़े हुए है बहुती प्यारा सा उन्होंने जगह बनाया हुआ है ब--

तरह का पौधा आपको मिल जाएगा और बहुत ही शानदार पौधे होंगे हर तरह की घास भी आपको यहां से बड़े आराम से मिल--

बहुत सारे खूबसूरत जो है वो समा है और बच्चे बड़े सब घूम रहे हैं खाने पीने की जगह है बहुत ही--

ये एक बाइक खड़ी हुई साइकिल बाइक है बहुती बढ़िया लग रही है यहाँ पर और --

बढ़िया काम कर रहे हैं बहुत मजा आ रहा है इनको और बहुत बढ़िया बढ़िया सी चीजें बना रहे हैं टीचर्स भी खड़े हुए हैं बहुत ही सुंदर--

बहुत ही शानदार और बहुत बढ़िया जगह है हर तरह से उन्होंने अलग-अलग करके बॉक्सेस बनाए हुए हैं कि--

यह बहुत ही बढ़िया सा बाग है उसमें रखता है और पौधे लगे हुए हैं कहां से बहुत ही प्यारा लग रहा है हर जगह दरख्त ही दरख़्त है।

इतनी बढ़िया जगह है इतना प्यारा में सारे पौधे लगे हुए हैं हर जगह पौधे लगे हुए हैं कुर्सियां लगी हुई है।